यहां पर ये गेट भी दिखाई दे रहा है।

यह एक रूम का दृश्य है।

यहां पर एक टेबल भी दिखाई दे रहा है।

जोकि अलग सेप और साइज में है।

यहां पर एक रोड भी है और रोड के किनारे मे कई सारे आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक बहोत बड़ा पोस्टर दिखाई दे रहा है जिस पर योनो कैश भी लिखा हुआ है।

जहां पर एक पोस्टर दिखाई दे रहा है।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

यह एक रूम का दृश्य है।

यहां पर इसके अगल बगल बड़े बड़े बिल्डिंगे भी दिखाई दे रही है।

पूजा का सामग्री दिखाई दे रहा है।

और यहां पर मिक्की माउस का झूला भी लगाया गया है।

या पर एक कई सारे आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

एक आदमी गाड़ी पर सवार है एवं लाल कलर का शर्ट पहना हुआ है।

यहां पर एक भगवान की तस्वीर भी दिखाई दे रही है।

यहां पर दो व्हाइट बोर्ड भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक आदमी का दृश्य है।

इसके ऊपर काफी सारे समाने रखे गए है।

जहां पर रेलवे के पटरी के किनारे में कई सारे मजदूर मिलकर काम कर रहे हैं।

यहां पर जमीन में टाइल्स भी लगाया गया है और इसके सीलिंग में पंखा भी दिखाई दे रहा है।

यह एक टावर का दृश्य है।

यहां पर साइकिल का कलर ब्लैक दिखाई दे रहा है एवं यहां पर एक पोस्टर भी है जोकि हरे रंग का है।

दुकान के बाहर में कई सारे गाड़ियां एवं दुकान के अंदर बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर आदमी का मुंह ब्लर किया गया है एवं वह हरे कलर का कोट पहना हुआ है।

यहां पर दुकान में लाइट भी लगे हुए हैं और दुकान में एक काउंटर भी दिखाई दे रहा है।

येलो एवं ब्लैक दिखाई दे रहा है यहां पर एक बाइक भी दिखाई दे रही है।

और उसे पर एक आदमी बैठा हुआ है यहां पर पेट्रोल पंप के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक काउंटर भी दिखाई दे रहा है।